यहा पर एक रूम दिख रहा है जहा पे बहुत सारी लड्कीया बैठी हुई दिख रही है सामने एक व्हाइट कलर का बोर्ड लगाया है वहा पे व्हाइट लाइट लगा हुआ है।

और नीचे कुछ बिछाया जो रेड कलर का है और दिवार व्हाइट कलर का है।

यहा पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है जो चा चारो तरफ से बना हुआ है। वो येल्लो कलर का पेंट हुआ है। रेड कलर से बार्डर किया गया है और सामने जालीदार लोहे--

और भी कुछ लिखा हुआ है और एक बड़ा सा खम्बा दिख रहा है। सामने एक दरवाजा बंद है और एक दरवाजा खुला हुआ है।

तीन लगा हुआ है लोहे का पाइप में और साइड में भी एक बस का आधा हिस्सा दिख रहा है। सामने पेड़ दिख रहा है।

यहा पर एक काँच के अंदर एक पेस्ट्री रखा हुआ है जो चॉकलेट वाला है कुछ व्हाइट दिखाई दे रहे और सामने मे भी कुछ--